सेहनाइयाँ बजा रहे हैं और इसके बगल में बहुत सारे लोग चल रहे है।

इस तस्वीर में सामने एक गिद्धौर का मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके नीचे कुछ फुटपाथ लगे हैं जिस में अंडा बिक रहा है और उसके बगल में एक ठेला लगा है।